यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी टीन भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही--

सामने चौक दिखाई दे रही है।

यहां पर एक एल_ई_डी लगी हुई दिखाई दे रही है।